यहां मुझे एक दरवाजा दिखाई दे रहा--

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे टेबल दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में मुझे एक किचन दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ रैक दिखाई दे रहे हैं।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

तस्वीर में मुझे एक स्कूटी का पोस्टर दिखाई दे रहा हैं।

यहां मुझे कुछ मैटरेस दिखाई दे रहे हैं।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

तस्वीर में मुझे एक झरना दिखाई दे रहा है।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

इस तसवीर में मुझे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में मुझे एक सोफ़ा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे दो शीशे दिखाई दे रहे हैं।